मिठाई लेवत रहे कुरकुरा काजनी का मिठाई लेवत रहे नइ जानॊ और एगो रुख रहे दुकान जाके--

मस्त फूल बनात है हरियर पतई लाल अस--